आसमान बिल्कुल साफ सुथरा और सुन्दर दिखाई दे रहा है यह पेट्रोल पंप के ऊपर इंडियन ऑयल लिखा हुआ है और ये अ वाइट कलर में लिखा है और जो ये बॉर्डर है यह ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है।

पीछे की और मुझे कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है पहाड़ भी दिखाई दे रहे है और पहाड़ों के बीच मे से सूरज की किरण निकलती हुई देखी जा सक्ती है जो की बहोत प्यारी दिखाई दे रही है आसमान भी अच्छा दिखाई दे रहा है।

एक रोड दिखाई दे रहा है रोड का कलर मुझे अम् ब्राउन दिखाई दे रहा है सामने की ओर रोड के ऊपर से पेट्रोल पंप पर जाते हुए दिखाई दे रहा है जिसका कलर मुझे ऑरेंज दिखाई दे रहा है वहां पर मुझे बहुत सारी प्लांट कटिंग दिखाई दे रही है जो की बहुत ह--

उनकी दृष्टि देखने पर काफी ज्यादा प्यारा और सुन्दर दिखाई दे रहा है यहाँ पर आसमान बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे कुछ इलेक्ट्रिक वायर भी जाते हुए देखे जा सकते हैं।